उसमें एक मोटस्ल पे एक व्यक्ति मोबाइल पे बात करता हुआ जा रहा है।

इसमें एक ही टी-शर्ट में छह नंबर व दस नंबर लिखा हुआ है।

जिन्होंने ने लाल रंग कल कपड़े पहन रखे हैं व उसके आगे नीले कलर के दीवारे की हुई हैं।

बड़े हैं छोटे व बड़े पेड़। काफी हरयाली है और उनके आगे बहोत बड़े-बड़े --

जो उनको कुछ मंतर दिखा रहे हैं। उसमें लड़के ने पीले कलर का कुर्ता-पजामा पहन रखा है।

तर में एक बिल्डिंग का दृश्य दिखाया गया है जिसमे बिल्डिंग के बाहर --

चित्तर में एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। इस बिल्डिंग का कलर सफेद है व चार-पांच मंजिला बिल्डिंग है।